है इंजन भी दिख रहा है और कुछ बिजली के तार भी नजर आ रहे है इसपे पटरी भी दिख रही है हरी घास दिख रही है।

ये पिक खुले आसमान के नीचे बैजनाथपूरी की दिखाई दे रही है जो की उम इस इस ये की भवन दिखाई दे रहा है इस भव जो की दो दो मंजिल का भवन है।

ये मार्केटिंग दुकान है। इसमे इसके अंदर दुकान के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है तथा दूसरे में भी एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा --

मकान भी नजर आ रहें हैं शायद कोई शहर है इसके पास घांस भी नजर आ रहें है लोग भी --

पिक किसी तीर्थ स्थान की है जिसमें शायद किसी नदी या किसी --

शोभा के लिए गमले नज़र आ रहे हैं इसमें पौधे लगे हुए हैं बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं सड़क नज़र आ रही है एक व्यक्ति भी नज़र आ रहा है तथा खुला आसमान भी नज़र आ रहा है दूर एक और बिल्डिंग दिख--

एक ब्रेंच पे शायद एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है मैदान में हल्की घास भी नजर आ रही है खुला आसमान भी नजर--